कुच्छ पानी दिखाई दे रहै जमीन दिखाई दे रही है हरे भरे पेड़ पौधे और वृक्ष दिखाई दे रहै पानी का रंग हरा दिखाई दे रहा है।

पूल पर काजी जम रही है वह काले रंग का भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे एक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा नज़र आ रही है दो तीन दो पये वाहन खड़े दिखाई दे रहे है एक पुरुष दिखाई दे रहा है।

उस तरफ तालाब के अम्म बस्ती दिखाई दे रही है कुछ इमारतें बनी दिखाई दे रही है पेड़ पौधे और वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।